इमेज में यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो बोहुत ऊंची दिखाई दे रही है यहाँ बोहोत सारे शटरें कांच लगे हुए दिखाई दे रहें है | यहाँ बादल दिखाई दे रहें है यहाँ तार दिखाई दे रहें है यहाँ बोहोत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं।

इमेज में यहाँ टीन शेड दिखाई दे रहा है। टीन शेड में साइकिल हैं। दिखाई दे रहे है। बोर्ड दिखाई दे रहा है।